जो की इधर से उधर जाने मे मदत करता है और ये इसके पास मे एक टॉवर भी लगा हुआ है और इसके सामने बहुत सारे घाँस फूस भी लगी हुई --

ये भी एक फ्लॉवर की दुकान है जिधर बहुत सारी फूल पत्तिया मिल रही है और ग्रीन पत्ते भी मिल रहे है।

और एक सेटेलाइट दिख रही है। और अलग अलग प्रकार के पेड़ भी दिखाई दे रहे है। और यहा बेठने का एक स्टैंड भी दिखाई दे रहा है हमे।

और इस मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुवे है यहा कुछ प्रोग्राम हो रहा है और बहुत सारी भीड़ है और यहा दिन हो रहा है।

अपना अपना सब काम देख रहे है।

ये एक अल्फास्पेस जो की सल्फास्पेस के उपर एक टावर लगा हुआ है।

और बहुत ही मतलब डरावनी जगह टाइप ये दिखाई दे रही है।

एक कुछ मतलब खड़े है कुछ बैठे है कुछ दिखा रहे है उन को अलग अलग प्रकार के यहा फ्लॉवर है देखिए।

पूरा खेत हरा-हरा हो रहा है।

और इस नदी के बीच मे भी बहुत सारे पेड़ वागेराह भी दिखाई दे रहे है।

यह एक खेल का मैदान है जिधर बच्चे खेलते हैं और बहुत सारी जालिया लगी हुई है।

फ्लावर्स लगे हुवे है और यहा से दो लोग आ रहे है और मतलब इस खेत मे दो तीन रास्ते भी दिए हुये है।

ये एक शॉप है जिधर दो बंदे खड़े हुवे है और एक काउन्टर पर खड़ा हुवा है कुछ लोग अंदर है जो की कुछ चीज के ले रहे है।